चारों तरफ से नील सेटिंग लाल और पिक सेटिंग चाहिए ऊपर में झूमर बनाकर चारों तरफ से फूलों से सुसज्जित यह दिख रहा है।

पर्दे लगे हुए हैं के सामने चेयर लगी हुई हैं अंदर कुछ कांच लगे हैं कुछ सामान लगे हुए हैं और लाइट से जगमगाता हुआ दिख रहा है धन्यवाद।